और सफ़ेद रंग के पेंट पहने हुए खड़ा हुआ है और दूसरा सफ़ेद रंग की शर्ट और काले रंग के पेंट भी पहना है।

और यहाँ की मट्टी बहुत ही साफ़ सुथरा दिखाई पड़ रही है यहाँ बगल में एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है ब्रिज के ऊपर में गाड़िया आती-जाती रहती --